और पानी ओनी बह गया। नदी कोई --

पीकॉक हमको बहोत बढ़िया लग रहा है मोर --

जोकि बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। आपको बढ़िया लगे तो बताएगा हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है।

और बोहोत बढ़ियां इनको तन्खा बढ़ियां से दीजिये।

आपको बढ़िया लगे तो बताइयेगा। हमको ये बैंक बोहोत बढ़िया लग रहा है।

बहुत बढ़िया लग रहा है। कोई बात नही है। --

और देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है तालाब।

मतलब झील टाइप में है। बहोत बढियाँ है और हमको ये बहोत बढियाँ लग है।